कमल बना हुआ दिखाई दे रहा है जो काफी सुन्दर लग रहा है यहाँ पर एक गणेश जी की मूर्ति का फोटो रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर दिवार पर कुछ कलर्स बने हुई दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है।

स्काई कलर रेड ग्रीन और येलो है यहाँ पर बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक घर दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक आदमी बैठ हुआ दिखाई दे रहा है जिसके पास बहुत सारी सब्जी रखी हुई हैं एक तराजू रखा हुआ है।

बहुत सारे कारपेट दिखाई दे रहे हैं कंबल रखा हुआ है यहाँ पर बहुत सारा समान म्म दिखाई दे रहा है जो काफी कलरफुल हैं।